और सारा दुकान भी है जीवनमे पोस्टर भी लागे है एक बड़े से पेड़ भी दिखते --

एक काने कार खड़े है और इकथी बड़ी सी कुछ फ्रिज जैसी रखे है अगल -बगल मे कुछ काला-काला मशीन रखे है।